जैसे की यहाँ पे ये कुछ लड़कियां हैं जो की ये काम कर रही हैं।

और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बहने दो बहने --

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं यह जो तस्वीर है ये तस्बीर एक मछुआरों के --

खूबसूरत लग रही है ये प्लास्टिक या फिर लोहे की बनी हुई है।

इस तस्वीर में तस्वीर है।